आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ नीचे ग्रे कलर का कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है एक गेट दिखाई दे रहा है और आसमान में धारियाँ दार नीले कलर में दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग में क क बिल्डिंग में एक खम्बा लगा दिखाई दे रहा है खम्बा नीले कलर का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग --

दुकान लगी हुई दिखाई दे रही जिस पर गूगल बुक सेंटर एंड टेलीकॉम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे भी बुक की दुकान दिखाई दे रही बु --

दिखाई दे रही बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान नीले कलर में दिखाई दे रहा है पेड़ अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।

जैसे पेप्सी आइसक्रीम वगैरा रखी हुई दिखाई दे रही है ऊपर हॉल में लाइटे लगी दिखाई दे रही है एक ए.सी. भी लगी हुई दिखाई दे रही है और --

पीछे का फर्श ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है।

पैलेस दिखाई दे रहा है पैलेस के हिस्से में बहुत सारी सजावट दिखाई दे रही है परदे लगे हुए दिखाई दे रहे है फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है फूलों की माला लगी हुई दिखाई दे रही है बा --